यह दृश्य एक मार्किट का है और यह दृश्य सुबह का है जहाँ मार्किट में--

दुकाने अभी फिलहाल बंद है और मार्केट के अंदर एक मोटर सायकल खड़ी हुई--

दूल्हे की कार है जिसको रंग-बिरंगे फूलो से सजा रखा है और उस पर अनेक प्रकार की फूल पत्तिया लगाई हुई है।

डेरी के प्रोडक्ट खरीदते हुए दिखाई दे रहै है।

यह दृश्य एक स्कूल का है और स्कूल दो मंजिला बना रखा है और स्कूल के गेट के सामने अनेक--